चर्च के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।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

सारी महिलाएं अपनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है और महिलाएं बहुत सारा--

जाती दिखाई दे रही है।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

सारी महिलाएं अपनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है।

चर्च के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।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

चर्च के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।

सारी महिलाएं इतनी सेवाएं देती हुई दिखाई दे रही है।

चर्च के ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।